इस तस्वीर के अंदर एक पाइप भी पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

एक बड़ा-सा गेट नजर आ रहा है जिसके --

और पीछे की तरफ कुछ गड़िया भी खड़ी नजर आ रही है।

छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है शर्मा।

इस तस्वीर के अंदर बहुत सारी कुर्सियां भी नजर आ रही है।

और पीछे के साइड बड़े अ बड़े - बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है और सामने --

और ये तस्वीर सायद किसी गिरजा घर के अंदर की लग रही है।

और पिछे के तरफ एक घर भी नजर आ रहा है जिस --

इस तस्वीर के अंदर ऐसा लग रहा हैये रेलवे स्टेसन की तस्वीर हो।

और पीछे एक दीवाल है बच्चों के और खिड़की भी नजर आ रही है इस तस्वीर मे।

पास बहुत सारे हार-फूल डले हुए नजर आ रहे हैं।